इस तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है कि ये एक दुकान है और उसके अंदर कुछ कच्छे और बनियान रखी हुई है।

इस तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है कि ये एक झील है।

इस तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है कि एक बच्ची--

जिसमें बहुत सारी लाइटे लगी हुई हैं और आसमान दिख रहा है।

इस तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है कि यह एक दुकान है जिसमे बहुत सारे रंग-बिरंगे परदे लगे हुए है।

इस तस्वीर में यह दिखाई दे रहा है कि कुछ प्लेट है जिसके अंदर खाने का सामान है और कुछ चम्मचे रखे हुए है।